यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है यहां पे नीचे एक एस_बी_आई बैंक दिख रहा है।

और यहां पे नेशनल फ्लैग रखा गया है।

ये एक यहां पे बड़ी सी दुकान दिख रही है।

कपड़ों की दुकान दिख रही है।

छोटे बच्चोंके कपड़े दिख रहे हैं यहां पे जींस नाइट पैंट टी शर्ट्स हैं नीचे यहां पे--

बड़े से पहाड़ भी है आजू बाजू यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े झाड़ा है।

बहोत सारे बुक्स को रखा गया है यहां पे बहोत सारे--

यहां पे ऊंची ऊंची फत्रों की दीवार उठाई गई है।

बोला भी है और इस दुकान पे यहां बहुत सारा--

और उसका यहां पे शटर बंद है।

यह एक यहां पे बड़ा सा घर दिख रहा है यहां पे एक बड़ा सा--

टेबल दाला गया है और यहां पे बहोत सारी चेयर्स दिख रही है पानी का जग है।

और उनमें यहां पे बहुत सारे पौधे--

सामने यहां पे बहोत सारी दुकाने हैं।

यह एक यहां पे बड़ा सा पिंजरा दिख रहा है।

यह एक यहां पे बड़ा सा जिम दिख रहा है।

ये एक यहां पे बड़ा सा जिम दिख रहा है।

यहां पे रनिंग मशीन --

कुर्सियों पे बैठे हुए हैं।

दिख रहा है नीचे यहां पे--